इसमें एक झरना दिख रहा है जो की एक डैम है डैम अभी बंद है।

इसके पीछे एक अह हॉफ शर्ट वाला है और उसके बाजू मे एक बन्दा है जिसने टी शर्ट नही पहना है।

और दो टेबल रखे हैं जहां पे चेयर है।

उस नदी में बहुत सारे बत्तख दिखाई दे रहे है कुछ उड़ रहे हैं और कुछ पानी में हैं।

दुकान जिसका नाम आर के कार्स एंड बाइक है।

जोकि बाहर की तरफ तैयार किया गया है अंदर जाने के लिए अच्छा सा व्हाइट कलर के पर्दे लगे है और ऊपर फूलों का लाइन से सजाया गया है।

और उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है ओ भी बने हुए हैं।

उन्होंने चेक में ब्ल्यू शर्ट पहना है पैंट ब्ल्यू लटके हुए है।

एक रोड पे तीनों घोड़े आगे की तरफ जा रहे हैं।

छोटी सी डंडी लगा के उस पे बहुत सारे सामान टांगे हुए है।

दीवालों पे गुड सैंडविच इज ए ह्यूमन राइट लिखा है।

साइड में एक कार खड़ी है रेड कलर की।

और रोड के साइड में एक बाइक वाला खड़ा हैं रेड कलर का टी शर्ट पेहने।

मारुति के पास से दो आदमी जा रहे हैं।

बाल आगे ना आएं तो उसने हेयर बैंड लगाया है ब्लैक कलर का।

बहोत से आदमी लोग चेयर पे बैठे है वाइट कलर का चेयर है।

का नाम इंग्लिश एक्सपर्ट लिखा है बोर्ड पे।

इस ये तस्वीर एक स्कूल का है जिसमें एक बैग रखी है बहुत सारे बेंच --

एक बड़ी सी दीवाल में एक बोर्ड है बोर्ड काले रंग का है।

इसमें एक चर्च वाले का घर है जिसमें एक आदमी कुर्सी पर बैठा है और एक अह एक औरत कुर्सी पे बैठी है।

उसने एक अंगूठी पहनी है और उसने पिंक और रेड कलर का हार पहना है।

कुछ कैरेट है कुछ कैरेटो में आम है और कुछ कैरेट खाली है।

आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी ने गंजी पहना है एक आदमी ने चड्ढा पहना है शूज पहना है।

बहोत सारे पत्ते पानी में दिख रहे हैं।

एक बड़े से पत्थर के ऊपर एक गाई व्हाइट कलर की।

इस तस्वीर में एक दुकान है जिस दुकान का नाम शीतल साउथ इंडियन कॉर्नर है।